हिंदी इंग्लिश दोनों में सेंट्रल बैंक इंडिया लिखा हुआ है।

जिम में मिरर भी लगा हुआ है।

एक ने ग्रीन कलर का शर्ट पहना हुआ है।

और अनानस भी रखा हुआ है।

मंदिर का जो प्रांगण है वो लाल कलर का है।

बहोत सारी घड़ियां लगाई हुईं हैं।

और बिल्डिंग दो फ्लोर की है।

बहोत सारे पेर भी नजर आ रहे हैं।

बहोत सारे मेडल्स रखे हुए हैं।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

एक जगह पे शेरा लिखा हुआ है।

बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।